पेड़ है जिसमें लाल रंग का धागा बंधा हुआ है एक शिवलिंग रखी हुई है तिरशुल रखा हुआ है नीचे सफ़ेद रंग है उसमें पानी गिरा हुआ है बगल में कुछ है संतरे-संतरे रंग का खड़ा हुआ दीवाल --

दीवार है उसमें ऊपर की तरफ लोहे के जालियाँ लगी हैं गेट लगी है लोहे के जिसमें आरा संकरा रा --

जिनमे कत्थई रंग से पेंट किया गया है सामने की तरफ सीढियां है साइकिल खड़ी है लूना गाड़ी खड़ी है ठेला है जिसमे प नाम नमकीन पैकेट रखे हुये है गा --

यहाँ पे एक खंभा है जिसमें बहोत सारी तार गई हुई है इंसुलेटर लगे हैं बहोत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें काँच लगी हुए है कहीं पे सफेद रंग से पेंट किया गया है कहीं पे कत्थई रंग से बॉटल प्लम के पेड़ लगे हैं हरे-हरे पौधे लगे हैं ट ऑटो है।

यह कोई कार्यालय है जिसमे समुदयिक भवन लि विद्युत भ्रमंडल लिखा हुआ है इसमे टाइल्स लगी हुइ है भुरे रंग कि